और उसके डो डोली के ऊपर देखो कितने अच्छे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

जो काफी अमेजिंग दिख रहा है | इसके अंदर पानी देखो कितना अच्छा दिखाई दे रहा है जाता हुआ और ये जब पास में जा कर देखते हैं तो इतना अच्छा द्रश्य दिखाई देता है कि मन को भावित कर देता है ।

और एक हरे कलर का पेड़ दिखाई दे रहा है। जो हमें बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। ये फोटो वैसे प्रकृति के तरफ से बहुत अच्छी दिखाई दे रही है।

दोस्तों इसके अंदर कारखाने के अंदर मशीनें दिखाई गई हैं। मशीनें देखो किस प्रकार से बड़े-बड़े सामानों को उठा कर एक जगह इकट्ठा कर रही हैं जो कि कितना अमेजिंग लग रही है।

और बिच के अन्दर पंखा लगा हुआ है और सायड इस दीवार के जो भी बिल्डिंग है। इसकी दीवार के पास में इस बैनर से छपे हुए जोकि काफी अमेजिंग लग रहे है।

इस हॉस्पिटल के पास में एक गेट है और गेट के ऊपर की साइड में एक बोर्ड छपा हुआ है। जिसके ऊपर इस हॉस्पिटल का नाम लिखा हुआ है और मुकेश त्यागी का नाम भी लिखा हुआ है।

दोस्तों इस फोटो में खेल का मैदान दिखाई दे गया है जिसके अंदर काफी सारे व्यक्ति खेलने के लिए आए हुए और कई व्यक्ति खेलने के लिए बैग लेकर आए हैं।

फोटो के अंदर किसी खेल के मैदान को दर्शाया गया है या फिर कोई ये खेल का मैदान ही दर्शाया गया है जिसके सामने कोई स्कूल या फिर कोई धर्मशाला है जो काफी अमेजिंग दिख रही है।